इसमें सभी एनिमल का इलाज होता है।

ये एक स्टेशनरी कि दुकान है।

इसपे लाल कलर से जय श्री सोमनाथ जी का मंदिर लिखा हुआ है।

इसमें कुछ व्हाइट कलर के क्लाउड्स वगैरह भी दिख रहे हैं।

ये न्यू कटनी बस स्टैंड की शॉप है।

अ कुछ लोग इस लाइटिंग को देख रहे हैं। सामने चर्च भी लाइटिंग से सजा हुआ है।

और एक ड्रेनेज की ल नली दी हुई है।

दो बकेट रखी हुई हैं रेड कलर की एक बकेट रखी है ग्रीन कलर की।

चार बोट रेड अ रेड कलर की हैं।

साइड में एक पॉप्युलर होम करके एक शॉप है।

और एक रूफ निकला हुआ है जिस पर ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है।

ये इमेज एक रेलवे स्टेशन की है।

और कुछ पेड़ लगे हुए हैं एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है।

बहोत सारी साइकिल खड़ी हुई है एक साइकिल ऑरेंज कलर की हैं।

ये एल_एन_टी का टीन शेड वाला ऑफिस है।

ये सामने एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की फोटोस हैं जिसमें ब्लू एंड्रॉयड स्टूल्स पड़े हुए हैं।

विंडोज है और नीचे टाइल्स लगी हुई है लाइट्स भी ऑन है।

यह मेडिकल शॉप है जिसमें दवाइयां सिरप रखे हुए हैं।